इस फोटो में एक आदमी साइकिल रिक्शा ले जाता हुआ खड़ा दिखाई दे रहा है एक और साइकिल रिक्शा पीछे खड़ा नजर आ रहा है नीचे सीढ़ियां नजर आ रही है रिक्शे का कलर लाल है जिस पर हरे पीले--

इस फोटो में एक छत का काम चलता हुआ नजर आ रहा है छत पर गिट्टी और रेत के ढेर लगे हुए--

सफेद हरे और गुलाबी रंग से बैलून से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है आदमी कांच के पास खड़ा होकर कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा ।